पीछे थोड़े लोग बच्चे भी दिख रहे हैं।

पीछे यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिख रही है।

बैंक एस_बी_आई का दिख रहा है ये एक बड़ी सी--

सेल्फ हैं और यहां पे बहोत सारे प्रोटीन्स के पाउडर के डब्बे रखें हुए हैं।

और यहां बाहर बहुत सारे पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां बाजू में इटांगिया उठा के पानी भर गया है।

प्लांट लगाया गया है उसके बाज़ू में एक वहां पे--